यहां पे एक फोटो है जो की एक बार्बर शॉप का फोटो है।

यहां पे एक बोर्ड टांगा हुआ है लाल कलर का जिस पे लिखा हुआ है मां कलेश्वरी फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पीले रंग से।

यहां पे ऊपर बिल्डिंग पे मारुति सुजुकी एरेना श्री बंशीधर नगर लिखा हुआ है नीले रंग से।

साइड साइड में पेड़ पौधे बड़े बड़े दिख रहे हैं जो कि हरे भरे रंग के हैं।

यहां पे एक बाल्टी भी रखा हुआ है सिल्वर कलर का और जो पीछे गेट है।

और बहोत भारी क्वांटिटी में रखे हुए हैं नीचे साइड भी रखे हुए हैं यहां पे प्लास्टिक में भी कपड़े रखे हुए हैं।

यहाँ पे बहोत सारा डेकोरेशन किया हुआ है बैलून से जो की बैलून का कलर वाइट ब्लैक और ऑरेंज है।

अंदर के साइड में शीशे का गेट है और तीन ब्लैक कुर्सियां और एक सोफा रखा हुआ है।

यहां पे ऊपर में बहुत सारी व्हाइट लाइट जल रही है और जो शेल्फ बना हुआ है उस पे बॉक्सेस रखे हुए हैं।

यहां पे एक फोटो है जिसमें सामने एक ऑफिस बनाया हुआ है।

जो दीवाल है उस पे वॉलपेपर लगाए गए हैं गोल्डन कलर के और ऊपर में फॉल सीलिंग की हुई है और व्हाइट कलर के लाइटें जल रही हैं।

और पत्थर के कुछ बनाए हुए हैं।

एक पंखा भी लगाया गया है दीवाल पे।

डब्बों के पीछे एक खिड़की है जो की खुली हुई है।